जैसा कि मैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी --

सफेद रंग यहाँ का जो शटल लगा हुआ है वो काले रंग का --

बैकग्राउंट है यहाँ पंखा काले रंग का लाइट सफेद रंग की जल रही है यहाँ पर लोग --

पीले रंग की ऑटो है जहाँ प --

जो सफेद रंग की है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पर आसमान सफेद-नीला कलर का है यहाँ एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक शोरूम है जहाँ पर दो ई-रिक्शा खड़े हुए हैं पीले रंग का नीले रंग का --

यहाँ पर चारों ओर एक्सरसाइज मशीन रखी हुई हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक बिल्डिंग है जो कि सफेद रंग की है।

फर्स भूरे रंग की है यहाँ चारों ओर हरे पेड़-पौ --

यहाँ का गार्डन में गुलाबी रंग का फूल है।

जहाँ की बिल्डिंग लाल रंग की है आसमान काला है।

आसपास हरे पेड़-पौधे हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर --

यहाँ का गेट हरे रंग का है यहाँ एक आदमी ने सफेद शल् --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक गार्डन है।

यहाँ की फर्श हरी रंग की है यहाँ आसमान सफेद रंग का है।

यहाँ चारों ओर हरे पेड़ हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये बस्तर डेरी फॉर्म है जहाँ कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

ग्रे कलर का कुर्ता पहना है यहाँ एक केमस्ट है जिसने ब्लू कलर का मार्क्स लगाया हुआ है।

जैसा कि मैं देख सकती हूँ यह एक बिल्डिंग है जो बूरे रंग की है।

यहाँ पर आसपास हरे पेड़-पौधे हैं यहाँ की फर्श हरे रंग की है यहाँ आसमान नीला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक फर्स भूरे रंग की है यहाँ आसपास हरे पेड़-पौधे हैं।

यहाँ पर बहुत-सी बिल्डिंग हैं जो कि आसमानी हरे भूरे रंग की हैं।

ब्लैक कलर का बैग है चारों तरफ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक आदमी है जिसने लाल कलर की टी-शर्ट ब्लैक कलर का लोवर पहना है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक होटल है जहाँ की फर्स --

हरा कलर की जमीन है आसपास हरे पेड़-पौधे हैं यहाँ पर एक पानी की टंकी जो ब्लू कलर नीले रंग की है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक बच्चों का कार्यक्रम है।

जमीन काली है यहाँ कुछ आदमी खड़े हैं एक लोग ने पीले रंग के कपड़े पहने एक लोग ने --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर छट की पूजा हो रही है यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पर बिल्डिंग सफेद रंग की है आसपास मंदिर है जो कि लाल रंग --

दीवारों में पीला रंग का है गुलाबी कलर का पर्दा है।